बहुत सुंदर लाइटों से इसकी सजावट की हुई है।

और तीन जेंस बैठे हुए हैं।

और गोल्डन कलर का शेड है उसमें --

रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

यह है एक मोटर पार्ट्स की शॉप लग रही है।

ये कोई गाड़ी खड़ी है।

जो फोन पे बात करते हुए गाड़ी को देख रहा है।

कुछ फैन भी लगे हुए हैं।

पीछे भी काफी पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

दो डस्ट बिन रखे हैंब्लू कलर के --